एक बहुत बड़ा सा शादी का पंडाल दिखाया जा रहा है जिसमें बहुत सारे चेयर्स रखे हुए हैं।

एक ट्रांसफार्मा का बहुत बड़ा सा मशीन दिखाया गया जिस पर बहुत सारे कलर्स के लाइट्स वाइट्स लगाया गए है येलो ब्लू रेड --

सीढ़ी है सीढ़ी पर कलर किए गए हैं नीचे ब्लू कलर का कारपेट बिछा हुआ है स्कूटी है स्कूटी पर हेलमेट रखा हुआ है बोर्ड है बोर्ड पर--

नीचे मार्बल का काम किया गया है और ऊपर में--

और फूल वूल है बहुत सारे बैगनी कलर के वाइट्स कलर के--

अ पिलर टाइप का दिया गया है डलाई करके उस परे लोहे का पीलर डाला गया है उसपे बहुत बड़ा सा बोर्ड है बोर्ड पर लिखा गया है होटल न्यू --

पौधे टाइप के उग गए हैं कुछ आदमी-उदमी को भी दिखाए जा र--

बैंडल टाइप का दिया गया है नीचे एक कारपेट टाइप का बिछाए गए हैं।

पीलर्स है एक बहुत बड़ा सा घर टाइप का बनाया गया ऊपर को--

अ अ अ मार्शल के खेलने कूदने के लिए एक--

स्टेज टाइप का बनाया गया है विंडोज विंडोज उसमें कांच है।

सामान रखे गए हैं एक लोहे का ग्रिल टाइप का बनाया गया है जिस पर बहुत सारे कुछ--

जो फोटो क्लिक कर रहा है वह शर्ट जींस पहने हुए हैं।